देख सकते एक मंदिर है मंदिर के आजू बाज पुजारी जो पूजा कर रहा है देखो की सामग्री रखी हुई है।

देख सकते हो की भैंस है भैंस की नैया है जो उसका दूध निकाल रहे देखो जो आजू बाजू लोग हैं जो--

सारे मिठाई रखे हुए है देखो काउंटर में एक ठो तराजू रखा है गा ब्रेड रेड रखे हुए हैं।

गोपालगंज गोपालगंज का ए_टी_एम है जहां आजू बाजू देखो कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं एक अंदर ए_टी_एम के लिए पैसे निकालने के लिए दो तीन बाइक खड़ी हुई है बाहर।

कॉलेज मे लाये कुछ लोग बच्चे लोग सामान ओमान खरीद के जा रहे है देखो कि एक आंटी आंटी सामान खड़ी सामने देखो कि एक दुकान है।

देख सकते हो कि एक ऑफिस है ऑफिस के कैबिन जहां देखो की आप देख सकते हो कि टाइस आइस का पलंग वलंग का ऑफिस है जहां देखो की पलंग की टाइस --

देखो की बॉल्स ऑल्स रखी हुई है लाइट कट का सामान रखा हुआ है लाइट का सामान मिलता है यहां पर।

जानवर का अस्पताल के बाजू में अब गेट बंद है। रात का टाइम है। एक बाजू में पेड़ लगा हुआ है। तारा लगा खिड़की बंद है। कूलर चल रहा है।

देख सकते हैं कैफे है कैफे बहोत अच्छा खासा सजा हुआ है देखो टेबल पूरी ब्लैक --

देख सकते हो कि एक वो आयेगी पार्टी हो रही है पार्टी की तैयारी आ रही हो रही है जहां देखो की टेबल सजे हुए गे जहां कुर्सियां रखी गई है आजू बाजू बरे बरे पेड़ लगे हुए हैं जहां देखो बरे बरे पेड़ है।

देख सकते हो एक गैरेज है गाड़ियों की दुकान का गैरेज जहां देखो कि एक स्प्लेंडर खड़ी हुई एनफील्ड खड़ी हुई है एक एक्टिवा खड़ी हुई है होता है जहां--